और ये जो पेड़ और फ्लावर्स के जो पेड़ है वो यहाँ बेचने के लिए रखे गए है और वो अं उनके ऊपर हमें फ्लावर्स भी दिख रहे है जैसे की जैस्मिन झेंडू और भी है।

और अं यहाँ पे हमें आकाश भी दिख रहा है और एक झोपड़ी भी दिख रही है और दो पेड़ भी दिख रहे है वहां पे बड़े वाले।

वो रोड पे से हमें घोड़े जाते हुए दिख रहे है और हमें आसमान भी दिख रहा है।

ये एक खेती है जहा पे फ्रूट्स लगाए फ्रूट्स के पेड़ है और एक आदमी है।